एक आदमी वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। नीचे में जो एक ग्रीन कलर का जो वो वो बिछाया हुआ है।

और वो ब्लैक कलर का है ये और एक पीछे में एक बिग वर्ड लिखे हुए हैं और शोल्डर भी है और शाहरुख़ खान का फोटो भी --